जनता को न्याय मिलना चाहिए। हमारे जितने सारे सरकारी क्रम काजकरता हैं और हमें पंचायत को लेके जितने सारे व्यक्ति हैं उनको न्याय चाहिए।

दिखने से कोई किन्ही का घर बुझाता है और कार्यरत है अभी यहां पे मजदूर लगे हुए है बहुत सारी सामग्री है बहुत सुंदर ही घर है।